जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक राजउत्सव है यह छत्तीसगढ़ राज्यउत्सव है।

नीला है यहाँ पर एक बैंक है जिसका नाम भारतीय स्टेट बैंक है यहाँ पर एक रिक्शा खड़ा है।

दरवाजे का रंग भूरा है दरवाजे पर कुछ फूल लगे है।

यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं कुछ कैलेंडर भी बाहर टंगे हुए हैं।

यहाँ पर जाली लगी है जाली का रंग सफेद हैं।

पत्तियों का रंग हरा है इसपे छोटे-छोटे फूल भी दिख रहे हैं जो हरे रंग के हैं दूर एक पत्ती दिखती है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यह एक घर की छत दिख रही है छत का रंग काला है।

रिक्शा खड़ा है जो काला और पीला रंग का है एक बड़ा पेड़ है जो हरा रंग का है बादल धुंधले हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत प्रकार के व्यंजन रखे हैं।

श्री बालाजी लाल रंग से डेरी नीले रंग से डेली नीड्स हरे रंग से लिखा हुआ है।

यहाँ पर काले रंग से मोबाइल नंबर लिखा है।

इस पर सफेद रंग से एचडीएफसी बैंक लिखा है।

मेक अवर फ्यूचर विद अस काले रंग से लिखा है यहाँ पर एक दीवार है दीवार का रंग--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहां पर एक मैदान दिख रहा है जो हरा भरा है यहां पर हरी - हरी छोटी - छोटी घास उगी है |

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहाँ पर एक मैदान दिख रहा है यहाँ पर मिट्टीनुमा--

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक म्यूजियम दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ वस्तुएँ रखी है ये वस्तुएँ --

छत पर सफेद रंग है उस पर कुछ लाइट लगी है लाइट का रंग सफेद है ।

कैटर्स है यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जिसने लाल सफेद और काले रंग की कमीज पहनी तथा नीले रंग की पैंट पहनी है।

पता है यहाँ पर हरे-हरे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर कुछ ब्लॉक बने हुए हैं जो खिड़की नुमा है जिसमें कांच लगा हुआ है कांच का रंग सफेद--

ये गुलदस्ते में लाल और पीले रंग के फूल भी लगी है |

तथा इसकी बैठक का रंग हल्का क्रीम है यहाँ पे कार्पेट पड़ी है कारपेट का रंग लाल है जमीन का रंग सफेद है।

और ऊपर एक बैनर लगा है जिस पर कुछ नीले रंग से लिखा हैं।